और कुछ छोटे-छोटे पेड़-पोधे लगे यहाँ पे शायद कोई पेट्रोल पंप है पेट्रोल पंप पे हम देखेंगे एक बाइक खाड़ी हुई है पेट्रोल भरा आ रहा है उसने और पिछे ऑटो और गाड़िया भी दिख रही है हमे।

और हमम देखंगे हम की साइड में बड़ा सा नदी या तालाब है जहाँ पर खूब सारा पानी भरा हुए है पानी थमा हुआ नजर आता है

ब्लैक कलर की है बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ बहुत सारी बाइक पार्क गई है।

इसमें हम देख रहे हैं की ऊपर की तरफ हमे आसमान दिखाई दे रहा है सफेद कलर में सफ़ेद कलर की बिल्डिंग है और स उस ब्लू कलर में उसको डिजाइन किया गया हैं।

जिस में हम देख रहे है की बहुत सारी महिलाये बेठी हुई है जिसके साम-हाथ में फ्रूट्स बगेरा रखे हुए है।

यह इमेज में हम देख रहे हे की एक लड़का है जो की ब्लेक टीशर्ट और जिन्स पहन कर खड़ा है यह कोई नदी या तलब बड़ा सा डेम है डेम में पत्थर बिच में रखे हुए है उसके ऊपर खड़ा हुवा है लड़का ।